कपड़ा आर हैकोनो कुनु मॉल है है ऊपर निचा में ऊपर काते-काते उजर रंग के घर है कपड़ा पूरा उपड़ा बिकता है अच्छा लग रहा है।

मंदिर है अच्छा लग रहा है पेड़ पौधा है टाइलस लागल है।

प्लेटफार्म बना है ऊपर में कट्टर राखल है और प्लेटफॉर्म पर आदमी है।

मॉल है गाड़ी है लिफ्ट लगल है ऊपर से आदमी आता है जाता है और समान लेके जाता है।

फूल है टोवेर वावर हैं तार वुर हैं फील्ड हैं फूल हैं तीनगो साइड में जंगल झाड़ है पेड़ पौधा है कुत्ता है।